और एक घड़ी घड़ी लगा हुआ है और एक ए_सी लगा हुआ है।

और एक व्यक्ति सीमेंट को सही कर रहा है तो एक व्यक्ति बगल में कुछ कर रहा है।

यह तस्वीर में एक देबी मां का मंदिर है और यह देबी मां कुछ छोटे छोटे टेबुल पर लगे हुए हैं।

और ऊपर की साइड ऊपर की साइड पौधे लगे हुए हैं।

और अंदर रूम में बहुत सारे पोस्टर रखे हुए है और कॉपी किताब रखे हुए है ऊपर का साइड एक पंखा है।

हर लोग शर्ट और पैंट पहने हैं और आसमान बहुत ही साफ लग रहा है।

यह एक शोरूम है और यह शोरूम में बहुत सारे बाइक लगे हुए है।

पंखा के बगल में घड़ी है और यह दीवार पीला कलर का है।

ये एक तस्वीर में ये एक रोड़ है और यहां रोड पर बहुत सारे आगे साइड बाइक लगे हुए हैं और एक आदमी साइकिल चला के जा रहा है।